घाना सारा खड्डा सा खोदा पड़िया हे तीन आदमी है।

यहाँ बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही हे सामने घाना सारा आदमी खड़े है।

नीच चटाइ बिछा राखी है साइड में डोली पर फुल सजा के रख हैफोटो लगा रखी है घड़ी भि है उसमे कांच भी लगा रखा है।

एक कांच को बैनर सो पड़ा है लार।

ऊपर एक पिलर लाग रहियो है लाईट लाग रही है गेट है।

घनी सारी लुगाया है बिच में एक कुर्सी पड़ी है एक धोला कलर को बेनर पाडियो है।